और एक दीवार पर काफी सारी पेंटिंग्स हैं वो लगी हुई हैं।

और ये चेयर्स वगैरा भी दिखा रखी हैं।

और ये एक झूला वगेरा दिखा रखा है।